पुल के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है पुल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊँचा पहाड़ भी दिखाई दे रहा--

बस के सामने वाले हिस्से में रंग का शीशा लगा हुआ है बस का कलर नीला और सफेद है बस के सामने एक लटकन में झूलता हुआ नजर आ रहा है बस के ऊपर कुछ बिजली के तार भी दिख रहे हैं और पीछे हरियाली भी नजर आ रही है।

यह पहाड़ पर कई सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए और कुछ घांस भी उगी हुई दिखाई दे रही है कुछ पेड़ की बेले भी झूलती हुई दिखाई दे रही है पहाड़ मे काफी हरियाली भी दिख रही है।

छोटा सा बच्चा बाल कटाता हुआ नजर आ रहा है जो की नीले कुर्सियों में बैठा है नाई बाल काट रहा है जिसने पीले और काले रंग की शर्ट पहन रखी है पीछे एक और आदमी कु किसी के बाल काटते हुए नज़र आ रहा है।

ये एक सलून दिखाई दे रहा है जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ करता हुआ नजर आ रहा है बाहर भी हरे और सफ़ेद रंग के गुब्बारे लगे हुये दिखाई दे रहे है बाहर दो लोग कुर्सी पर बैठे--

यहाँ किसी जगह के अंदर एक लड़का जिसने भूरे रंगकी जैकेट पहन रखी हैं एक छोटे से बच्चे के साथ फोटो खिचवाते हुआ नजर आ रह हैं इस लड़के ने सफ़ेद रंग की टाई भी लगा रखी है।